और एक सामने छोटा घर दिखाई दे रहा है।

बेड के ऊपर में एक बालसित दिखाई दे रहा है।

ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि एक कुर्सी में बैठे हुए हैं।

और एक घर दिखाई दे रहा है घर के ऊपर मे एक अलवेस्टर लगाया है।

चित्र में एक बैनर दिखाई दे रहा है और तीर का निशान बना हुआ है।

बैनर में लिखा है मंडपा माइनस टू और एक सड़क दिखाई दे रहा है जोकि बहुत अच्छी तरह से ऊपर में सजाया गया है।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

एवं बहुत सारे मोबाइल का कवर एवं चार्जर दिखाई दे रहा है।

इन बहुत सारे लाइटे दिखाई दे रहे हैं जे जोकि जल रहा है और तीन आदमीयाँ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे और एक चौकी दिखाई दे रहा है और बहुत पुराना अलमारी दिखाई दे रहा है जोकि ताला लॉक है।

ए_सी दिखाई दे रहे हैं जो की सफेद कलर का है और पंखा दिखाई दे रहा है।

वो पंखा दिखाई दे रहा है और खिड़की दिखाई दे रहा है जिससे रोशनी अंदर आ रहा है।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

एवं उसने पोशाक पहना हुआ है स्कूल ड्रेस एवं बहुत सारे बड़े लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं विद्यालय में लिखा हुआ है सुखदेव मुखलाल इंटरमीडिएट महाविद्यालय और एक महिला दिखाई दे रहा है जो कि मास्क पहन के रखा है।

लैपटॉप दिखाई दे रहा है एवं बहुत सारे कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं।